बाजु में एक सोफा है रेड कलर का और सामने एक बोर्ड है जो--

आजु-बाजु हरियाली हरियाली दिख रही हैं यहाँ पे बदल भी छाए हुए है।

एक पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे उम्ह उम्म एक से दो सौ दस के पत्र होते हैं।

रे तीजा तिहार के लिए स्टेज बनाया गया।

जिसमे घड़ीमी पत्थरों की डेकोरेशन की गई है सामने बहोत बड़ा पोस्टर लगाया हुआ है।

और दो चम्मच भी रखी हुईं हैं सामने कोका कोला की बॉटल रखी हुईं हैं।